गेट खुला हुआ आसमान है खुला दिख रहा है।

ये बहुत आदमी बैठ के देख रहे है कुर्सियां लगा हुआ हैं।

हरा पेड़ है वहाँ और डिब्बे में दवाई लिया हुआ है।

बंद घर जेते आसमानी कलर से रंगा हुआ है।

गुलाब कलर के बड़ा सा गुलदस्ता रखा हुआ है वहाँ पर लेडीज बैठी हुई है बुढ़ी है।

वहां पे कुर्सी लगा हुआ है पंखे लगा हुआ लाइटे लगा हुआ है।

हाँ एक मड़ई का घर है ठेला लगा हुआ है दो कुर्सी लगा हुआ है हरा-भरा पेड़े है।

जाली से चारों तरफ से घेरा हुआ ऑरेंज कलर हरा कलर --

दो मंजिले बहुत बड़ा कॉलेज है उस कॉलेज के बाहर ग्राउंड है।

एक बहुत पुराना मकान है उस मकाने में बहुत सुंदर --

बड़ा मशीने के नटे रखा हुआ है बड़ा मशीने के बड़ा-बड़ा नटे है।

ये वाला अगरबत्ती अभी जल रहा है बहुत सारे जल --